और जो ये मूर्ति है वो बहुत ही च्छी मूर्ति है। इसे हमलोग जो है पूजते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है की यह जो है दंडवत नमस्कार के रूप है यह मूर्ति को --